गमले रखे हुवे नजर आ रहे है।

टोल का बोर्ड लगा हुआ है।

इस तस्वीर में कुछ मोटर बाइक --

बच्चे जा रहे हैं।

जिसके नीचे एक सफेद--

और यह इमारत शीशे खिड़की वाली है।

की हुई है और कुछ गमले ऊपर छत पर--

यह तस्वीर इंडियन ऑयल पम्प --

छोटा वृक्ष कुछ बड़े वृक्ष भी हैं।